यहाँ पर एक बहोत सुंदर सी बड़ी सी कंपनी दिखाई दे रही है।

बाइक दिखाई दे रही है रेत पड़ी हुई दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रही है।

लिखा हुआ है ए यहां पर वो ग्रीन कलर की और वाइट कलर की दिखाई दे रही है दो टायर दिख रहे हैं ए --

एक वाइट कलर की टी-शर्ट दिख रही है एक ब्राउन कलर की शर्ट दिख रही है।

एक सामने एक पोस्टर लगा दिख रहा है एक ग्रीन कलर की शर्ट दिख रही है।

पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का दिखाई तो दे रहा है।